और उसके साइड में लाइट का खंभा भी लगा हुआ है ।

एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसमे एक ए_सी लगा हुआ हैं।

इस तस्वीर में तीन पहिया बैट्री के रिक्शे नजर आ रहे हैं और एक छोटा-सा टेबल भी रखा हुआ है और मकान के अंदर खिड़किया कांच की बनी है।

और सामने में सीमेंट की रेलिंग बनी है और उसके पीछे बड़ा सा मकान भी नजर आ रहा है।

एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की बिल्डिंग की ये तस्वीर है जिसके ऊपर लाइटें लगी हैं और आस-पास में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और उसके दीवालों पे एक गमले का चित्र भी बना हुआ नजर आ रहा है।